कितनी अच्छी तरह से धूप खिली है और यहाँ पर जैसे आप देख सकते कितना अच्छा मैदान है।

और इस जगह में थोड़ी सी पेंटिंग हुई है शायद।

यह बहुत ही खुबसूरत है जैसे कि हम इसे डेकोरेशन में यूज़ करते हैं।

और ब्रैंड का सेलिंग कर रहे है ठीक है।

नेपाल की लगती है क्यूंकि येह झोपड़िया वैसे ही दिखाई जा रही हैं बहोत सारे लोग हैं।

और देख सकते हैं हम कुर्सी पर यूनिफार्म और छतरियां भी रखी हुई हैं।

एक टिन है उसमें पता नहीं क्या है।

बहुत सारे घर मंदिर और शायद --

कोई काम कर रहा है और कोई साफ़-सफाई कोई देख रहा हैं।

उसके आस-पास काफ़ी भीड़ जम गई है।

फुल कपडे और अंदाज़ में बैठें हैं इनके कपड़े हिस्टोरिकल लगते हैं।